तथा इन्हे काटकर शेप दिया गया बगल में एक सर्कल बना है जिसके अंदर बहोत सारे मिट्टी व पेड़ पौधे लगे हुए है।

यह एक बिल्डिंग है जहाँ बालक छात्रावास का बोर्ड लगा हुआ--

बाइक व स्कूटी व कार पार्क ऊपर पोस्टर लगे हुए है। जिसे पंजीयन भवन कार्यालय लिखा हुआ है।

यह एक मैदान है जिसके बाहर एक पार्किंग दीवार बनी हुई है तथा गेट लगे हुए है गेट के पास में एक छोटा गेट --

यह एक राजदीप ट्रेडर्स का बोर्ड लगा हुआ है जिसके नीचे एक शॉप है शॉप के अंदर एक छोटी -सी लाईट लगी हुई है आस -पास अंधेरा है।